हमे यहाँ पर एक ग्राउंड दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे है हमे यहाँ पर सफ़ेद कलर की बिल्डिंग्स दिख रही है। हमे यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे दिख रहे है।

यहाँ पर एक श समुद्रर दिखाई दे रहा है। बहोत सारे मकान दिखाई दे रहे है। लाइटिंग के तार दिखाई दे रहे है।